इस तस्वीर मे लड़के का साइड से सर दिखाई दे है कुछ आधासा गंजासा है कुछ आधे तरीके से उसके बाल कटे हुए है और पीछे की तरफ़ खाली दीवार दिखाई --

यहाँ पर कार सुधारी जाती है और एक कार को ऐसे हवा मे लटका के उस कार के नीचे से कुछ काम करते हुए दिखाई दे रहा है कार का नीचे का हिस्सा दिखाई दे रहा।